इस तस्वीर में मुझे एक जगह दिखाई दे रहा हैं जहां पे ढेर सारा पेड़ पौधे है रास्ता भी दिख रहा हैं।

खाने पीने के लिए लाल और सफेद कलर का कुछ रखा हुआ है जो की रस्सी से टांगा हुआ है।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

दुकान के अंदर थाली बर्तन भी है और थर्मस भी है।

तरह तरह के बोतल और कप्स भी है।

स्ट्रीट लाइट के पोस भी है। खिड़कियां और बालकनी भी दिख रहा हैं। पीछे में टावर भी है।

रेस्टोरेंट के खिड़कियां और दरवाजे भी दिख रहा है।

टेबल्स भी दिख रहा है कबर्ड के ऊपर कुशन्स भी रखा हुआ --

उसके पीछे आईडिया लिखा हुआ है।

बेलून में रिबन्स भी लगाया गया है बहुत सारा कंप्यूटर्स भी है।

मिट्टी भी दिखाई दे रहा है।

बैठने के लिए जगह और टेबल भी है।

दो कोशिन्स भी दिख रहा है स्विच बॉक्स भी है वेंटीलेटर भी है।

इस तस्वीर में एक स्टेशन दिखाई दे रहा है।

बहुत सारे मनुष्य ने बैग पकड़ा हुआ है दो बैनर भी दिख रहा है।

ऊपर में एक डब्बा भी दिखाई दे रहा है जहां पे टी सेट लिखा हुआ है।

इनमें ब्लू और येलो कलर का बॉक्स भी दिखाई दे रहा है टाइल्स के फ्लोर भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा कमरा देख रहा है।

सामने नीला कलर का एक बड़ा सा सोफा भी है।

इस तस्वीर में कमरा भी दिखाई दे रहा है जहां पे एक लकड़ी का फर्नीचर भी रखा हुआ है।

सामने में लाल कलर का चेयर भी है तिल के गमले भी देख रहा है।